आ फोटो में चर्च जैसो बदो सो मकान दिख रहो बाकि सामने एक छोटो मकान दिख रहो दो को बिच में एक बड़ो सो गेट दिख रहो।

छा फोटू में स्टील की ट्रे में बहोत सारी जलेबी दिख रही जिनको रंग लाल है जे गोल गोल अजीबो डिज़ाइन से बनी भई दिख रहीं।

पीछे दीवाल को रंग निलो है नीचे फाउंडेशन को कलरो निलो है।

और बिच में नदी दिख रही नदी को पानी सफ़ेद दिख रहो ऊपर आसमान में धुन्दलो सो सूरज दिख रहो।

सामने एक बोहोत बड़ो सफ़ेद दरवाजो जैसो दिख रहो बगलन में बोहोत सारी बड़ी-बड़ी खिडकियाँ दिख रही है बामे से रौशनी आ रही ।

और काउंटर को रंग कारो दिख रहो जमीन को रंग लाल दिख रहो दीवाल को रंग पिलो --